ये मुझे एक बिल्डिंग के अंदर का दृश्य लग रहा है।

सामने ही मुझे एक मछली के आकार का शोपीस भी दिखाई दे रहा है।

इस स्टेज पर बहोत सारे व्यक्ति खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

इस गेट के ऊपर सुखदेव पैलेस लिखा हुआ है।

सामने ही मुझे एक स्टेज भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर मुझे एक हाथी का स्टैचू भी दिखाई दे रहा।

इस बकरी का कलर मुझे वाइट एंड ब्लैक लग रहा है यह दृश्य मुझे बहुत ही अच्छा ल --